मैदान है पीछे घर भी दिख रहा है वहाँ पे खिड़किया है पेड़ है पत्ते है।

टाइलस लगे हुए है पेड़ है ऊपर अद चादर है।

एक पार्क है एक झूला हैलोहे की सीढ़ी पेड़ है घास है।

उत्सव पैलेस है एक बिल्डिंग गार्डन आ स्कूटी है टू व्हीलर है आ पेड़ है।

विंडोज है टायर्स है मशीन है।